ढब्बा है होटल है क्या है होटल तो ऐसे नहीं होते अफकोर्स ये कोई ढाबा वगेरा होगा

हूं काफी बड़ा लग रहा है देखने से सभी चेयर्स का कलर एक ही है व्हाइट व्हाइट वहाँ एक महिला--

पता नहीं वो क्या कर रहे हैं लेकिन शायद वो जिम ही के लिए आए हैं एण्ड यहाँ पर ज्यादा जो कलर देखने को मिल रहा है वो ब्लैक ही है सब --

यहाँ पे देखो फिर से वही फिर से वही और चलिए खैर वो सामने कुछ गोल-गोल से लगे है वाइट कलर के एंड